सामने एक नांव दिख रही है जो कि तालाब या नदी में तैर रही है।

नाव बहोत बड़ी है नाव नीचे से नीले रंग की पूती हुई है।

सामने एक मछलियों दुकान दिख रही हैं जिसमें बहुत सारी मछलियां रखी हुई है।

हम दुकान के सामन एक सज्जन खड़े हुए हैं तथा एक सज्जन बैठे हुए हैं कुर्सी पर।

और बाहर एक बहुत सारी कुर्सी डली हुई हैं और बाहर एक हाथ धोने के लिए वाश बेसन भी लगा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है उसके साम सामने बहुत सारी चार पहिया के वाहन पार्क हैं।

अगल बगल में अच्छी सजावट भी देखी दिख रही है।

और पेन और भी पेंस पेन पेंसिल टंगे हुए हैं।

एक गेट नुमा दरवाजा है और सामने एक जाती हुई सड़क दिख रही है जो कि कच्ची सड़ाक है।

और यह रेस्टोरेंट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने दीवार में टाइल्स लगे हुए हैं।

और केशू कंप्यूटर अर्जेंट फोटो फोटोकॉपी भी लिखा हुआ है।

सामने एक फूल फोर्स का लोगो बना हुआ है।

इसमें प्लस के बहोत सारे चिन्ह बने हुए है इसमें कई दरवाजे दिख रहे है।

सामने एक ढाबा का चित्र देख रहा है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां डाली हुई है और टेबल डाली हुई है।

कई ब्रांड की गाड़ी भी रखी हुई है और एक फोर व्हीलर भी सामने रखा हुआ है।

शंकर जी का पोस्टर लगा हुआ है देवी के प्रतिमा का पोस्टर लगा हुआ है हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है।

आस पास पेड़ भी दिख रहे हैं।